वो सफेद शर्ट पहना हुआ है उसके पीछे एक ऑटो है जो कि पीले कलर का है। उसके पीछे एक कार खड़ी है जो कि सिल्वर कलर की है। उसके सामने एक मकान है जो काफी ऊंचा है।

चारों तरफ घर है| एक घर मे कई सारे लगे है जो की सामने है।

छे मूर्तिया हैं। सभी रंग बिरंगी हैं और सभी कुछ वादयंत्र के हैं।

दूर-दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं जिसमें काफी लंबे-लंबे पेड़-पौधे हैं।

एक दुकान है जिसमें कापी किताब रखी हुई हैं कुछ पेन रखे हुए हैं एक कुर्सी है।

जो चारों तरफ रखी हुई है। ये सभी एक कापी किताब के स्टैन्ड मे रखें है। एक लाइन से रखे हुए हैं।

इसमें एक लड़का शर्ट पहना हुआ है। नीचे जीन्स पैन्ट पहना हुआ है। सफेद कलर का शूज पहना हुआ है।

और बहुत सारे लोग हैं जो कि औरतें हैं और कुछ आदमी लोग भी हैं जो कि आ रहे हैं और जा रहे हैं बीच में बहुत सारी रेल की पटरिया हैं| जिनकी बीच में बहुत गिट्टियां हैं।

यह एक पेट्रोल पम्प है जिसमें बहुत सारी पेट्रोल पंप वाली मशीनें लगी हैं। ऊपर छत बना है जो के सफेद कलर का है जिसमें लाइट लगी हुई हैं।